एक सामने के ऊपर एक बच्चा बैठा है इधर एक झरना भी है।

बच्चे यहां रिपब्लिक डे सेलीब्रेट कर रहे हैं।

इसका मतलब यह डब्बे आग से बचाते हैं।

दीवार के सामने बहोत बड़े बड़े पत्थर है।

बाहर एक बोर्ड भी लगा है।